'' यहाँ पर एक शोरूम दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक मोटर साइकिल खड़ी हैं काँच का गेट लगा हुआ है जिस पर पीछे की दीवार दिखाई दे रही है एक ऑटो रिक्शा दिखाई दे रहा''''है जिनके बनी हुए है। ''

पर एक ढलान दिखाई दे रही है ढलान में छोटे -छोटे पौधे दिखाई दे रहे है पेड़ दिखाई दे रहे है मिट्टी दिखाई दे रही है नए पौधों पर फूल खिले हुए है फूल गु ऑरेंज और पीले कलर के है पास पे देखने पर हरी- हरी --

चर पर ओ के जीसस क्राइस्ट की पिक्चर बनी हुई है बराबर में तो फूलदान लगे है जिस पर पेड़ भी लगे हुए है नीचे देखने पर तो ब्लर दी की आपत्ति दिख रही है फ्लोर दिख रहे --

यहाँ पर एक मकान दिखाई दे रहा है जिसमें ईंटें बनी हुई है ऊपर की छत दिखाई दे रही है छत जो है वह बल्लियों के सहारे नीचे खड़े हैं नीचे कंकड़ पड़े हुए हैं दिवार दिखाई दे रही है दिवार ईंटो की बनी है पीछे देखने पर एक दिवार दिखाई दे रही है जिसपर ईंटें लगी है।

यहाँ पर मिट्टी फैली हुई है मिट्टी में हरी-हरी घास दिखाई दे रही है पत्थर पड़े हुए हैं कंकड़ पड़े हुए हैं मोटे मोटे टीले पड़े हुए है छोटे-छोटे इटे पड़ी हुई है पीछा दिवार दिखाई दे रही है दिवार के सहारे कई हरी-हरी घास लगी हुई है।

यहाँ पर एक टोकरी रखी है जो कि नीले रंग की है जिस पर एक प्लेट रखी है प्लेट में स्ट्रॉबेरी रखी है स्ट्रॉबरी लाल रंग की इनकी पत्तियाँ दिखाई दे रही है पत्तियाँ हरी रंग की हैं।

--ऊ रंग की हैं ऑरेंज कलर की हैं नीचे प्लस पर जिस पत्थर पे रखी हुई हैंजिनपे अलग अलग प्रकार के फूल नीचे रखे हुए हैं। या सजे हुए--

स्विमिंग पूल का दृश्य है यहाँ पर पौंड बना हुआ है जिसमें पानी भरा हुआ है पानी इसका जो फर्श है वह नीले रंग का है जिसमे नीली डार्क नीली रंग से कट पट्टियाँ पढ़ी हुई है।

जिसके ऊपर हेलोजन लाइट लगी हुई है यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिसपे कुछ लिखा हुआ हैजिसमे लाल और सफेद रंग से लिखा हुआ है। ये एक--